यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर एक सामने एक लाल कलर का लोहे के जैसा यहाँ पर गाड़ी है और यहाँ पर दूर से देखने पर बहोत सारी --

यहाँ पर बहोत सरा सामान दिखाई दे रहा है। जैसे प्लेटफॉर्म होता है वैसा दिख रहा है। यहा पर बहोत सारा समान यहाँ पर और कुछ लोग यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं।